जो कि यहां पे बहोत सारे स्कूल के सामने ही बहोत सारी मोटरसाइकिल वगैरह भी लगे हुए हैं और यहां पे एक एक्टिवा भी खड़ी है।

जो कि ये दुकानदार बेचता ही होगा और यहां पे बहुत सारी चीजें बेचने के लिए ही रखी गई हैं।

सोनालिका की है और ये पीछे वाला टायर इन आगे वाले से बहोत ही बड़ा है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।